इसमें ए_सी शायद खराब हुआ हुआ है जिसको नीचे लेटा व्यक्ति ठीक कर रहा है और ऊपर छत से भी फॉल सीलिंग टूटी हुई है।

इसमें बैलेंसिंग व्हील मिलते हैं एलायमेंट व्हील मिलते हैं टायर्स मिलते हैं टायर चेंजिंग मिलते हैं नाइट्रोजन मिलती हैं हर तरह की एक्सेसरी मिलती है।

इनसे वेल्डिंग भी की जाती है अलग अलग तरह की मशीने में पड़ी है।

टाइल्स ओ बना रहे हैं। सड़कों के किनारे पर लगती है। और इसको बहोत दृश्य बना रहे हैं।

सामने दो में और जग भी रखे है जब इसे प्यास लगेगी तो ये पानी पी लेगा।

ये जो पिक्चर हमारे को दिखाई दे रही है इसमें एक सुपर स्टोर है जहां पे अलग अलग तरह के जूससे रखे हैं।